और बहुत से लोग खड़े हुए अ खड़ा हैं.

मंच बहुत लंबा चौड़ा है मंच सजाया हुआ है.

और हम्म मंच पर एक महात्मा जी बैठे हुए हैं.

अरविंद कास्ट एंड ओफसेट प्रिंटिंगस यह एक दुकान है दुकान में तीन कैमरा है.

रूम में फोटो है और एक दीवालघड़ी है सरस्वती जी का फोटो है साइ बाबा का फोटो है.

कोई चीज उजला बोडा में वजन हो रहा है.

छट पूजा में बहुत से परबईतीन सब बैठे हुए है लाइट जल रहा है टेंट लगाया हुआ है.

और नीचे जो है प्लास्टिक के कवर का रखा हुआ है रैक पर और सभी रैक

और पेट्रोल टंकी के इधर रूम है उसका दरवाजा खुला हुआ है उस जगह फूलदानी में फूल लगाया हुआ है और पेट्रोल टंकी के बा-

धान काट काट के बोरा में आदमी रखा है और एक धान रोप रहा है।

और एक ट्रैक्टर अम रोड से नीचे है दूसरा ट्रैक्टर का पिछला चक्का है से रोड पे है.

इसपे दुकान के ऊपर जुत्ता छापा हुआ हे.

और दुकान में बहुत सारा दूद जूता चप्पल रखा हुआ है.

और छओ नाव तीन नाव चार नाव पर दो दो आदमी बैठे हुए हैं दो नाव पर एक एक आदमीन बैठे हुए हैं।

और इसमें टायर रखा हुआ है।

उदघाटन के लिए अमा के पूल भी टंगा हुआ है पंखा है ई--

यह एक बहुत बड़ा मकान है.

सभी लोग कुछ कुछ खा रहे हैं।

नीचे फर्श पर पूजा के थाली है। और बक्सा है। बक्सा के बगल में फोटो रखा हुआ है। पूजा करने के लिए।

और एक पे आदमी छापा हुआ है.

यह एक बहुत बड़ा मशीन है.

और इस रूम में एल_जी कुकर रखा हुआ है।